ए दाउ गा दाउ उहु एकर कलर मत लगवइहा गा कई दिहा अउ साइड में अउ कत पेड़-पउधा भी जरूरी मत लगवइहा गा --